बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।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

अ मुझे इस फोटो में बहोत सारे जूते दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक आईना दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

फोटो में एक केक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक साइकिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक इमारत दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।